और ये सामने बीच में एक फाउंटेन बनाया हुआ है जो रात में बहुत सुंदर लगता है।

ये बोधगया वॉटरपार्क है जो बोधगया में है ।